जैसे यहाँ पे कोई पार्टी होने वाला है।

बहुत सारे टेबल और कुर्सियाँ लगाई गई हैं।

कपरे का मार्केट नजर आ रहा है।

एक दुकान में एक औरत बैठी हुई है।

इस तस्वीर में एक पीले कलर की ब्लेंडिंग नजर आ रही है।

मेट बिछा करके स योगा करते हुए नजर आ रहे हैं।

सामने की तरफ एक आदमी उनको गाइड कर रहा है।

मोहल्ले का रोड नजर आ रहा है।

उनमें से दो झन स्कूटी पे हैं।

सामने एक केले का बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में एक इमारत नजर आ रही है।

इमारत की तरफ से एक कार निकलता हुआ नजर आ रहा है।

दूर कुछ लोग ऑरेंज कलर के कुर्ते में खड़े हैं।

इस तस्वीर में एक म्यूजिक क्लास नजर आ रहा है।

लैपटॉप राखा हुआ है कुछ कुर्सियाँ--

एक लैपटॉप सिल्वर कलर का है जो एच_पी का है।

जीम में एक स्टेन फैन रखा हुआ है।

जिम में बाकि जिम के बहुत सारे इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं।

सब्जी वाले ने आलू भी रखा हुआ है।

एक टोकरी में बैगन भी है।

दोनों लड़की ब्लैक टी_शर्ट में हैं।

एक लड़का ब्लैक कलर की गाड़ी में क्रॉस करता हुआ --

इस तस्वीर में एक तालाब नजर आ रहा है।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

ब्रीज पे एक आदमी भी खरा है।

तालाब के आसपास बहुत सारे पेर नजर आ रहे हैं।

दूर में एक पहार नजर आ रहा है।